दिखाई दे रहा है

इसमे हमको एक जाली दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की इसमे हमको दो व्हाइट कलर की --]

इस ईमेज में हमको पत्थर दिखाई दे रहे है इस ईमेज में हमको हरियाली दिखाई दे रही है इस ईमेज में हमको दिखाई दे रही है हमें उधर एक आसमान दिखाई दे रहा है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है इस ईमेज में चारों तरफ हरियाली लगी हुई है।

इसमें एक रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर हेरण कुछ खा रही हैं ए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बगल में जाली लगी हुई है बहुत सारे पेडे लगे हुए--

हेय चार पाँच खिड़की लागी हुई है इसमे येल्लो कलर का पेंट दीवालों पे किया गया दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है इसमे एक रेड कलर का बोर्ड लागा उसमे लिखा है शासकीय रानी कमलावती महाविद्यालए। ]

देखने में हमे शॉप जैसी दिखाई दे रही है इसमें प्लेटे रखी हुयी है घडी रखी हुयी है और उसमे दीवाल लगी हुयी है और इसमें--

इसमें ये ब्लू कलर का पैंट बोहोत अच्छा लग रहा हैं देखने मे बोहोत अच्छा लग रहा हैं इसमे एक दरवाजा दिया हुआ हैं इस इमेज मे व्हाइट कलर का आधी दिवाल दिखाई दे रही हैं इस इमेज मे एक बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।